एक कल्याण सा नजर आ रहा है जिसके अंदर मुझे मिट्टी वहां की मिट्टी मुझे लाल रंग की नजर आ रही है कुछ पत्थर नजर आ रहे है एक पेड़ नजर आ रहा है जिसके नीचे के तरफ डाली झुकी हुई नजर आ रही है ऊपर के तरफ काफी सारी हरियाली हरियाली पेड़ नजर आ रहा है।

मुझे एक लोहे का बना हुआ काफी बड़ा सा मुझे एक क्रेन सी नजर आ रहीं है जिसके ऊपर मुझे कुछ समान लोड करा हुआ जा रहा है सामने के तरह मुझे कुछ लड़के नजर आ रहे है।

मुझे काफी सारे जूते नजर आ रहे है जो की कांच के लॉकर के अंदर नजर आ रहे है इसी के साइड नीचे की तरफ भी मुझे कुछ कांच के लॉक में जूते नजर आ रहे है इस साइड के तरफ मुझे एक जूते नजर आ रहे है।

कुछ सामान नजर आ रहे है इसके सामने साईकिल बैग नजर आ रहे है और जो अंदर की कांच नजर आ रहे है।

झाड़ू नजर आ रहे है कुछ डंडे नजर आ रहे साइड के तरफ खड़े हुए डंडे में आ रहे है जो सामने में साथ में कुछ डब्बे नजर आ रहे है और जोकि ब्लू और येलो कलर के डब्बे नजर आ रहे है।